और यहाँ पर गुलाबी रंग का काउंटर बना हुआ है जिसपर कुछ पेपर चिपके हुए हैं। अंदर की तरफ अलमारी बनी है। सामान रखा हुआ है।

यहाँ पर हमें एक टॉय ट्रेन दिख रही है जो कि गुलाबी आसमानी और पीले रंग की ट्रेन है। आगे की तरफ इंजन है। पीछे की तरफ डिब्बा बना हुआ है।

ब्रेड का पैकेट है और कुछ यहाँ साबुन के पैकेट रखे हुए --

और यहाँ पर हमें बहोत सारे लोग दिख रहे हैं और एक कुछ महिलाएं दिख रहीं हैं जिन्होंने साड़ी पहनी हुई है कुछ पुरुषों ने पैंट --